एक लेबर ने अपने सर पर ऑरेंज कलर का गमछा बांधा हुआ है और दो लेबर सीमेंट का काम कर रहे हैं।

यह एक कंस्ट्रक्शन साइट है जहां अभी रोड बिछ चुकी है और लेंटर डल रहा है।

यह क्रिसमस डे सेलिब्रेशन है मेरे स्कूल में जहाँ पर ब्लू और वाइट कलर के कर्टेन से डेकोरेशन किया गया है ग्रीन --